यहां पर एक ग्रीन कलर का--

यहां पर ईटों से बनी और टीन गिरी हुई है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और ग्रीन कलर के पेड़ पौधे पास में दिख रहे है।

यहां पर बहुत सारे खिलौने रखें हुए हैं।

और यह स्कूल की बच्चे लग रहे है।

वायर दिख रही है।

यहां पर शिशा भी लगा हुआ है।

जहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है।

यहां पर आधार सेंटर नजर आ रहा है।

यह एक गार्डन है।

यह एक केमिस्टर की दुकान है।